एक स्टेडियम है बहुत बड़ा यहाँ पस साइकिल है बाइक है गेट भी है लोहा का खम्भा भी लगा हुआ है तार है इसमे पेड़ पोधे है खेल कूद रहे है सारे--

यहाँ मंदिर का शुरुवात है दो तीन आदमी मन हेवै जे जात है अन्दर म--

हे गार्डन मन दिखत हे एदे पेड़ मे कई ठो कलर मे पुताय है बैठे के हे --]

पत्थरा गेरा हेवै ए जगहा बदल भी दिखत हे ए जगह यहाँ कोई बहुत अछा है।

लागत हे जंगल के बिच में ऐसा दिवासी मन रहिथे और घर वगैरा बनाए है पूरा परिवार दिखत हे ए जगह